देखिये कुछ चीज का होगा प्रोग्राम और देख सकते है की आप इधर ये फैन है लाइट है।

ये आप देख सकते है कि देखिये क्रिस्चन लोग का चर्च है और देखिये इसमें क्रिस्चन लोग जितने भी है सब इसमें चर्च आते है सैटरडे को--

की आप देख सकते है की देखिये बहुत बड़ा देखिये बिल्डिंग है इसमें देख सकते है की देखिये बहुत बड़ा ए होल्सलेर है शायद शोपिंग मोल है देखिये बहुत लोग है देख स्कते है देखिये एक लोग बैलून --

ते इधर कॉलेज भी है और देखिये साइड में स्कूल भी है।

हेलो गाइस की आप देख सकते है दो तला बिल्डिंग है ए शायद हमको जायदा कुछ होगा कॉलेज है और देखिये इधर बाइक सब है बहुत ढेर सारा बाइक है।

हेलो गाइस कि आप इसमें देख सकते हैं तस कि देखिये एक चार चक्का गाड़ी है देखिये सायद हमको जब ये खराब हो गया होगा उसमें देखिये एक चाक हटा दिया है।